सुंदर अलमारी रखी हुई है।

जिसे मंदिर का एक कोना दिखाई दे रहा हैं।

कि यहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर लाइट्स लगा कर बहुत सारी कुर्सियां रखी--

हां जीज्जा जी भी है आकाश भैया भी हैं और उन्होंने मेरे लिए लिपस्टिक भी नहीं ली है।

मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस चीज का लग रहा हैं।